हर तरफ दरखत ही दरख्त है--

ये हॉस्पिटल का कोई डिपार्टमेंट है जिसमें के दो वेटिंग एरिया दो सफे परे में एक टेबल पर होगा टेबल के ऊपर पानी की बोल पर होगा --

और एक ए_सी लगा हुआ है ऊपर लाइटें लगी हुई है और साइड पे वो बना हुआ है एक स्टैंड सा बना हुआ है जहां पर लोग लटक के एक्सरसाइज करते हैं और--

ये एक रोड है यूनिवर्सिटी कॉलेज या कोई कॉलोनी का रोड है।

अपार्टमेंट के एसी भी लगे हुए हैं और कोई गाली गाड़ी काले रंग के है कोई मुश्किल किसम के--